इस तस्वीर मे नीला आसमान नज़र आ रहा है हरे झाड नज़र आ रहे है लाइट के खंबे दिखाई दे रहे है और इसान के हाथ जैसा मूर्तिया बनी है।

इस तस्वीर मे आसमान नजर आ रहा है सड़क नजर आ रही है। एक चार पहिया वाहन खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर मे नीला आसमान नजर आ रहा है झाडे नजहर झाडे नजर आ रही है और इक सड़क नजर आ रही है जिस पर एक चार पय्या वाहन और एक तीन पय्या वाहन चल रहा है।

जिसपर एक चार पय्या वाहन खड़ा हुआ नजर आ रहा--

इस तस्वीर मे हमे नीला आसमान नजर आ रहा है हरे झाड नजर आ रहे है और एक छोटा सा जूना घर नजर आ रहा है जिसके अंदा--

इस तस्वीर मे छोटा सा पानी का पार्क नजर आ रहा है नीला आसमान नजर आ रहा है आस-पास के इमारते नजर आ रही है।

कमान जिस पर गुम्बत बनी हुई है वो नजर आ रही है।